यह एक खेल का मैदान है। इस मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे है।

यहाँ पे छठ पूजा हो रही है और यह पूजा पोखरा के बगल में हो रही है।

और यहाँ पर दो कुर्सियाँ लगी हुई है उधर बगल में भी एक लड़का खड़ा है ।